यहाँ पर हम देख सकते है कि बहुत सारे कृत्रिम फूल भी लगे हुए हैं इस कृत्रिम फूलों का रंग हरा पीला लाल गुलाबी है।

ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है उनके साथ राधा जी भी है भगवान कृष्ण की ये मूर्ति सफेद पत्थर से बनी हुई है।

यह एक सार्वजनिक उपवन की छवि है यहां पर बहुत सारे बच्चे आए हुए है।

ये एक जिला परिवहन कार्यालय की छवि है यहाँ पर बोहोत बड़े-बड़े अधिकारिक काम करते है।

ये मस्जिद इस्लाम धर्म के लोगो के लिए बोहोत ही महत्वपूर्ण है।